यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े आगे जा रहे हैं यहां पर एक बच्चों का खेलने का खिलौना रखा हुआ है।

यहां पर आगे एक पोस्टर लगा हुआ है लाल कलर का।

यहां पे एक बहोत ही बड़ा ऑफिस बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जिलाधिकारी शामली।

उपर दो गेट है गेट के ऊपर कुछ लिख रहा है।

यहां पर दो बच्चे हैं जिनके हाथ में बहोत सारी किले हैं।

गुफा के अंदर मूर्तियां रखी हुई है सारी।

यहां पर तीन चार बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं।

यहां पर कट्टे पड़ा हुए हैं सामने पीछे बहुत सारा टूटा फूटा सामान पड़ा है।

यहां पर दो गाड़ियां खड़ी है एक सफेद रंग की एक काले रंग की।

पीछे कुछ यहां पर वो पेड़ पौधे से हैं कार खड़ी हुई है।

सड़क के बगल में बहुत सारे मिट्टी पड़ी हुई है।